खूब निक बेचाता बहुत मीठ लागता बहुत सुंदर-सुंदर बा बहुत ढेर क बा बड़ी निक-निक सुंदर-सुंदर बा। बहुत लोग खरीदता बहुत निक बा।

ट्रेन को सुंदर बा। आसमानी कलर उमा आदमी बैठाता। कितना आदमी उतरा ता।

हमनी का का का टीशन बा खूब नी खंभा बा खूब लोहा लोहा -ऊहा लउकता खूब घर उर लउकता खूब सुंदर मिट्टी -उट्टी लउकता खूब एक दुवार- उवार लउकता।

निक बान्हल बिया बहुत सुदर बिया गईया बड़ी नीक खातिया।

एगो मेज बा। मेजे प एग् पलेट बा। पलेटे में चाय बा। कॉफी ह। एगो दूगो कप बा। कपे में कॉफी बा।

अब हमू चल तानी स्कूले में नाम लिखवाइ पढे। घर बनता बहुत सुंदर बा बीम ढलाईल बा छड़ लागल बा कटरैन पर गइल बा।

खूब निक ट्रैक्टर खड़ा बा ओमे हर लागल बा सुंदर-सुंदर पहिया बा आसमानी के बा खूब निक --

एगो मेज बा| ओइ पर कुल निक क प्लेट सजावल बा|ओइ में कुल निक चावल धइल बा| खूब निक से सलाद बनावल बा| सब्जी बनावल बा|